ब्लू कलर के गेट दिखाई दे रहे हैं कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ पोस्टर --

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस का कलर येलो रेड ब्लेक दिखाई दे रहा है और कुछ सिल्वर कलर की चद्दर दिखाई दे रही है। एक वाईट कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है। एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर कुछ हॉल दिखाई दे रहा है जिसकी दीवारों का कलर औरेंज ग्रीन वाईट दिखाई दे रहा है एक फैन दिखाई दे रहा है कई सारी चेयर दिखाई दे रही है।

यहा पर आसमान का कलर वाइट ग्रीन और ब्लू दिखाई दे रहा है।

यहां पर लोहे की कई सारे फर्नीचर दिखाई दे रहें है।